इस दिए हुए चित्र में एक लड़का उसने अं गले में रुमाल पहन के सेल्फी खिंच रहा है सेल्फी के अन्दर एक लेडीज आं आगे की तरफ जा रही है वहां तो कुछ ऑ ऑइल का अम्मन ठेला नज़र आ रहा है।

और ऊपर से स्वेटर भी पहना हुआ है उसके पीछे हरी-हरी झाडियाँ नज़र आ रही है कुछ पौधे नज़र आ रहे है।

इस दिए हुए चित्र में एक लड़का पास में खड़ा हुए उसके पीछे बहुत बड़ा फूलों का बगीचा नज़र आ रहा है बहुत सारे आदमी उस बगीचे के अन्दर घूमने के लिए आए हुए है फूटपाथ पे आ लड़कियां नज़र आ रही --

इस दिए हुए चित्र मे दो लड़के अपने सेल्फी खिचवा रहे है। पीछे के साइड मे एक लड़का अपने बालो को हाथ लगाया हुआ है उसने ईरफ़ोन पहने है एक आ अपने चेस्ट की अ एक्सरसाइज कर रहा है।

दिए हुए चित्र मे एक आदमी झ पेड़ लगा रहा है वहाँ पे उन्होंने गढ्ढा करके आप मिट्टी डाल रहा है पीछे के साइड पे झाडियाँ नज़र आ रही है एक साइड पे दो एक घर के दो खिड़कियाँ नज़र आ रहे है।

कुछ लोग अंदर की तरफ प्रवेश का रहे है। प्रवेश के द्वार के ऊपर-ऊपरी साइड मे लाइट चमक रहा है।

बॉक्स एक बड़ी मच्छी दिख रही है बाकी सब छोटी मच्छी दिख रहे है एक आदमी मच्छी बेच रहा है।

एक आदमी उन्हें हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है एक आदमी उन्हें बता रहा है की कौनसी मच्छी कौनसी है।